अं बगल में नदी है उसके उस पार कुछ पेड़ पौधे हैं।

यह घर के अंदर का सीन है।

यहां पर जंगल दिखाई पड़ रहा है।

दुकान में ढेर सारी मछलियां काउंटर पर--

और सामने एक बड़ा सा खेत है।

और नदी के किनारे पर रंग बिरंगे--